ऊपर एक पंखा दिखाई दे रहा है।

खिड़की में परदे लगे हुए हैं।

हम देख सकते हैं यह एक रूम है।

हम देख सकते हैं यह रेल की पटरी है।

हम देख सकते है यह किसी कॉलेज या स्कूल की तरह लग रहा है।

यहां एक चेयर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दीवार पर एक तस्वीर लगाई हुई है।

एक आदमी लाल रंग के टोपी पहनाना बाहर बैठा हुआ है।

ऊपर एक पंखा दिख रहा है।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

कार के पीछे इंग्लिश मे होंडा लिखा हुआ दिख रहा है।